घर के सामने थोड़ा सा गार्डन है।

और साइड पे घर के साइड पे एक सिडी भी लगया गया है।

उम कुछ मसाले भी रखा गया है बचने के लिए।

पैमपर भी है छोटे बच्चे के लिए--

एक दोकान मे बहोत सारा प्लास्टिक की चीजे फुल--

बहुत सारे चीजें इस दुकान पे मिलता है सब रखे हैं बेचने के लिए।

साइड पे भी एक दोकन जहा पर की बैठने के लिए कुछ कुर्सी रख--

बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे हैं।

बनाया गया है कुछ बिल्डिंग घर भी दिख रहा है।

माल्कानगिरी जैसे छोटे शहर का ए सिनेमा हॉल --

पैदल भी चल रहे हैं साइड पे बड़ा-बड़ा ऑफिस है बिल्डिंग है घर है।

बड़ा बड़ा नारियल की पेड़ है मैंगो ट्री है।

बहोत सारे काम करने के लिए कंप्यूटर वगैरा है।

लाइटिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है देखने के लिए और ऑफिस बहुत अच्छा लग रहा--

और इस जंगल और पहाड़ देखने के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है खूबसूरत है।

बहोत अच्छे अच्छे चीज है डमरू है।

है ए_सी भी लगाया गया है रूम की कलर वाइट कलर के है कुछ बैग सामान साइड पे रखा गया है।

बहोत सारा लेड़की लेड़कियां सेल्फी ले रहे हैं।

पीछे एक स्टेज बनाया गया है जहां पर की व्हाइट रेड कलर की फ्लावर से डेकोरेट किया गया है देखने के लिए स्टेज बहोत ही खूबसूरत लग--

इस फोटो चित्र में दिखता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग घर हैं।

और नीचे एक झोपड़ी का घर है।

दुकान देखने के लिए बहुत सुंदर दिख रहा है।

और साइड में बहोत सारा जंगल है ग्रीन कलर का पेड़ सब बहोत सुंदर दिख रहा है और सामने से बड़ा पहाड़ दिख रहा है।